कलर भी किया हुआ है। ऊपर आसमान दिख रहा है। अंदर एक मूर्ति है। बाहर सोलिंग बना हुआ है इटे का।